इस इमेज में हम देख सकते है तिन महिलाएं है जो अपनी छत पे कसरत कर रही है योग कर रही है और ये लोग योग कर रही है ।

यहा पे हम देख सकते है यहा पे ढेर सारी बाईक वगेरा स्कूटी वगेरा खड़ी है और ये सामने यूनियन बैंक है जिसमे व्यक्ति आ जा रहे है।

इमेज में हम देख सकते है यहा पे घर बन रहा है जिसमे मिस्त्री दिवाले खड़ी कर रहा हैऔर ढेर सारे ईटे विंटे रखे हुए हैबालू रखे हुए हैपाईप रखी हुई है।

इस इमेज में हम देख सकते है हमारे सामने बहुत बड़ा गार्डन है जिसमे हम टेहल सकते है खेल सकते है कूद सकते है और शादी वगेरा में हम टेंट लगा के शादी भी कर--

यहां पे रहते हैंआप कोई भी रेलवे से सिचुएटेड कोई भी शिकायत या जो भी आप यहां पे कंप्लेंट कर सक--

और हम देख सकते है हमारे सामने बहत बडी सी ईमारत है जिसपे लिखा है आई.एफ.सि और अगर्वल एलेक्टरी इलेक्ट्रानिक्स लिखा है जिस पे हार इलेक्ट्रॉनिक मशीन वागेर या एलक्टरिक चीज़--